और यहां पे सड़क दिखाई दे रही है और यहां पे कुछ लोग पैदल चल रहे हैं।

और यहां पे तीन लड़के दिखाई दे रहे है यहां एक लड़का फेस मास्क पहना है।

ये एक इंस्टीट्यूट दिखाई दे रहा है और यहां पे बड़ा सा इंस्टीट्यूट है और यहां एक--

यहां पे एक बड़ी सी टेरेस दिखाई दे रही है टेरेस पर कुछ काम चल रहा है।

ये एक प्लेटफार्म है प्लेटफार्म के अंदर--

और यहां पे टेनिस बैट है लड़कों के हाथ में और यहां पे कुछ चेयर्स दिखाई दे रहे हैं और यहां बहोत सारे लाइट्स दिखाई दे रहे हैं।

ये एक स्कूल दिखाई दे रहा है और इसका नाम है माता सुंदरी पब्लिक स्कूल --